पीछे और सामने हम दिखेगे तो हमको कई तरह अलग-अलग क तरह हमको पेड़ नज़र आ रहै है।

ऊपर की और हम देखेंगे तो वह पर हमको सी_सी_टी_वी कैमरा नज़र आ रहा है और हम बाजु की तरफ हमको --

इस चित्र में हम देख सकते है कि यहाँ पर हमको ऊपर की तरफ आसमान देखाई दे रहा है और हम बाजु के तरफ देखेंगे हमारे को यहाँ पर --

बस का नंबर सात जीरो जीरो दो नज़र आ रहा हैं।

वो शरीर बनाने के रहा है जैसा कि यहाँ पे हमको --

प्रकृति नज़र आ रहा है जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते है कि बड़े -बड़े हम पहाड़ॊ को देख सकते हैं ।

नीचे हम देख सकते है संजय शर्मा जी का कुछ दिखाई दुकान दे रहा हैं ।

इस चित्र में हम देख सकते है की यहाँ पर हम को एक मार्केट जैसा नज़र आ रहा है जहाँ पे--

एक होटेल जैसे दिखाई दे रही है जहाँ पे हम पीछे की ओर देखेंगे तो वहाँ पे परदे हूए लटकाएँ हुए हैं।

उसको सजाय हुआ नज़र आ रहा हैं।

और हम यहाँ पर देख सकते है की पानी की ग्लासेस हमको उलटे सीधे नज़र आ रहे है और हम पीछे की और दिखे तो उल्टा हुआ रखा नज़र आ रहा है।

इस चित्र में हम देख सकते है कि यहाँ पर बच्चे लड़कियाँ स्कूल को जाते हुए नज़र आ रहे हैं ।

और हम पीछे कि तरफ देखेंगे तो हमको वहाँ पे बहुत सरे पहाड़ों दृश्य नज़र आ रहा है पेड़ो का दृश्य नज़र आ रहा है।

इस चित्र मे हम देख सकते है की यहाँ पर हमको आसमान दिखाई दे रहा ऊपर को ओर हम निचे कि ओर देखेगे तो हमको यहाँ पर एक--

व समुन्दर या कुछ हमको कह सकते है और हम पीछे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर हमको है न --

अ झरो फूसो का नजर आ रहा है जैसे की हम वहा देख सकते है ।

अब में एक गाड़ी को भी देख सकते है यहाँ पर खड़ी हुई --

इस चित्र मे हम देख सकते है की हमको यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ व सब्जी लेता हुआ नज़र आ रहा है।

कितने मिला हुआ है जैसा कि हम ऊपर की ओर आसमान को देख सकते है और हम यहाँ पे पहाड़ॊ को देख सकते हैं ।

वो अपने कपड़ो का कुछ थीम बनाये हुए वो खेलते हुए नज़र आ रहै हैं नीचे की ओर हमको घाँस देख सकते है ऊपर हम आसमान को देख सकते है।

और हम आजु- बाजु देखेंगे तो हमको वहाँ पर अलग तरह के पेड़ों का नजर आ रहा हैं।

टेप्स वगरह सीढियाँ चढ़ने के लिए आदमी को और हम ऊपर की ओर लगेंगे तो हमको आसमान दिखाई दे रहा है ।

तीन सो सेवेनटीन फाइव ऐसा लिखा हुआ हम देख सकते है यहाँ पर हमको और यहाँ पे हमको और यहाँ बहुत सारे लोगो भी आते खरीदते दिखाई दे रहा है।

रंग भी मारा गया है और हम यहाँ पर हम देख सकते है कि एक गाड़ी भी खड़ी हुई नज़र आ रही हैं ।

और हम देख सकते हैं कि यहाँ सामने हमको लाल तरग तरंग की गाड़ी भी खड़ी हुई नजर आ रही है।

अलग तरह के पेड़ों में नज़र आ रहा है और हम एक पेड़ में देख सकते है कि एक भी पता नहीं है पूरे झड़ गया नज़र आ रहा हैं।

बिल्डिंग्स का जैसा की इमारतों का भी नज़र आ रहा है निचे की और हम देखेंगे तो हमको वहा पर--

ये चेयरो को सजाया गया हुआ है अच्छे से उसको बनाया गया हुआ ऊपर के और देखेंगे तो वहाँ पे --